जो ये गाड़ियों को सेल किया जाता है जो खरीदा भी जाता है इधर एक तरह की गाड़ी मिल जाती है एक बहोत अच्छी--

जो ये हर एक काम करने के लिए आती है जोकि वजन उठाने के लिए मिट्टी भरने के लिए आती है एक बहोत ही बढ़िया और जे_सी_बी --

एक कैरम बोर्ड भी बहुत अच्छा बिछा हुआ है जो कि एक बहुत ही अच्छी और शानदार तस्वीर बनाई गई है।

जगह बनाई गई है जहां पर अ शादियां वगैरा भी होती हैं मत्था पुजारी भी किया जाता है।

कंपनी को काम करने के लिए दिया जाता है जो भी ये ट्रैक्टर --

एक एक तस्वीर दिखाई जा रही है जो की एक बढ़िया सी मशीन है।

जो हरेक कामों के लिए काम आती है ये एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त एक मशीन है जो कि एक गोडाउन में--

हो रही है दिखाई गई है एक बहुत बड़ी इमारत है।

एक बड़ी पुरानी इमारत है जो इसमें बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है जो कि थ नीचे गाड़ियां भी खड़ी है यहां --

एक बढ़िया सी दुकान है ए बहोत खूबसूरत दुकान बनाई गई है इसमें हर एक तरह का रोगन मिल जाता है।

जोकि एक तस्वीर दिखाई गई है जोक जो भी व्यक्ति योगा कर रहे हैं नहीं एक बहोत ही अच्छा--